पीछे गुब्बारा लगाया हुआ है। दीवार को हरा कलर से पेंट किया गया है।

पीछे बस भी लगाया हुआ है जो पीला कलर का है।

गेट में बहुत सारे डिजाइन बनाए गए हैं और बहुत सारे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और सामने बहुत सारे गाड़ी लगाया हुआ है।

पीछे एक आदमी और एक लेडीज दिखाई दे रही है आदमी जैकेट पहना हुआ है।

दीवार को वाइट कलर से पेंट किया गया है और नीचे एक पीढ़ा रखा हुआ है।

एक आदमी दिखाई दे रहा है और पीछे बच्चा भी दिखाई दे रहा है बच्चा के पास एक कुर्सी है जो लाल कलर का है।

बहुत सारे तार भी लटकाये हुए हैं।

यह एक सैलून का दृश्य है जिसमें दो तीन लोग दिखाई दे रहे हैं और एक का दाड़ी बनाया जा रहा है।

दृश्य में बहुत सारे झूला दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक लूना दिखाई दे रहा है जो काला कलर का है।

दीवार को व्हाइट कलर से पेंट किया गया ह--

और बगल में बहुत सारे लकड़ी रखा हुआ है।

बगल में एक लोहे का पाइप दिखाई दे रहा है जिसमें लाइट लगाया हुआ है और सोलर पैनल भी दिखाई दे रहा--

पोल का खंभा दिखाई दे रहा है जिसमें तार खींचा गया है।

इसमें बहुत सारे मूर्तियां दिखाई दे रहे हैं।

सीढ़ी दिखाई दे रहा है सीढ़ी में रेलिंग लगाया हुआ है।

ऊपर बहुत सारा लाइट जल रहा है।

नारियल का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

दृश्य में एक घर दिखाई दे रहा है जिसके बाहर पोस्टर लगाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है पेट केयर ।

यह एक हॉल का दृश्य है और हॉल में बहुत सारे डिजाइन बनाए हुवे हैं।

और ऊपर बहुत सारे लाइट जल रहा है और छत को व्हाइट कलर से पेंट किया गया है।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

पीछे दो लोग दिखाई दे रहे हैं और सामने पानी का बोतल रखा हुआ है।